सारे लोग एकत्रित होकर सूर्य को अर्ग देते हैं।

यह किसी छत की ढलाई का फोटो है और इस फोटो में लगभग सात आठ लेबर दिखाई दे रहे हैं और उसमें एक शायद --

जो हैप्पी बर्थडे का स्टीकर लगा हुआ है और तरह-तरह के बल्लून से सजा हुआ है और उसमे एक पु का भी फोटो है और उसमें दो-तीन चार महीले दिख महिला दिख रहीं हैं और उसी में अल्वेस्टर का एक पीछे मकान भी है और उसका दरवाज़ा जो है वो वाइट कलर का दिवार भी उजला है।

ए.सी. और नॉन ए.सी. रूम की भी सुबिधा उपलब्ध है और इसका जो रूम जो है बहुत ही अच्छा है कम दाम में और सब कुछ बढ़िया है।

और उसके सामने प्रोटेक्शन के लिए उस केस में शीशा भी लगाया गया है।

नवोदय विद्यालय एक सैनिक स्कूल की भी तैयारी --

इस तस्वीर में एक व्यक्ति जो है किसी जगह आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के सामने दो और व्यक्ति खड़े हैं और एक व्यक्ति बैठा है।

और उसी तस्वीर इस तस्वीर में एक लड़का उजले शर्ट में काले बैग टांग कर किताब को खोलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक आदमी उस साइड कोने में खड़ा है और दो लोग जो हैं लाइन में लगे हुए --

और ये गोपालगंज ब्रांच है और गोपालगंज जो है बिहार में है और सामने एक रिक्शा वाला भी है जो एक आदमी को बैठा कर ले जा रहा है।